काम के टाइम काम कर रहे है यहाँ पर दो वर्कर अपना कार्य स्वयं करते हुए दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर कुछ टेबल कुछ चेयर रखी हुई नजर आ रही है यहाँ पर अलग-अलग लाइट जचती हुई दिखाई दे रही है ।

यहाँ पर अनेक मुर्गी भी है यह मुर्गा सबसे बड़ा है और इसके सर के ऊपर अधिक बाल है यह बहुत ताकतवर मुर्गा है ।

बीच में कुछ सलाद है और एक चटनी है साइड में चारो किनारों पर चिकन फ्राई --

यहाँ पर हमें एक छोटी टाइप की नजर आ रही है कुछ पेड़ की पत्तियाँ और फूल इस स्टेज के ऊपर लगते हुए कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।